पिआनो भी शो अ दिख रहे हैं तबला भी दिख रए है |

यहाँ पे एक आदमी है जो कि पानी पी रहा है और ये एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है जो कि स्टोन अ के स्टोन से कवर्ड है ब्लू कलर से।

ये एक पेेंडल है जहाँ पे ऊपर आ-आ फूलो से सजाया हुआ है।

यहाँ पे एक दो लड़कियाँ है और एक लड़का है इसमें एक बाइक भी है एक लड़की के हाथ में फ़ोन है ।

ये एक पार्क टाइप है जिसपे रस्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है ।

इसकी सीढ़ियां दिखाई दे रही है बिल्डिंग वाइट एंड ऑरेंज कलर के से पेंटेड है।